यह एक नदी का दृश्य है। इसमे --

यह एक घर के सामने के पार्क का दृश्य है जिसमे रात का समय है का फोटो लिया गया है और यह एक --